यह कुर्सियां और बड़ी-सी मेज रखी हुई है बगल में एक शीशे का अलमीरा भी है और सामने एक बोर्ड है।

यहाँ एक आदमी ए.टी.एम. के बाहर खड़ा है यह ए.टी.एम. के दरवाजे शीशे के है।

यह पिक्चर में एक आदमी एक शर्ट लेकर खड़ा है यह आदमी ने द ग्रीन कलर की स्वेटर पेहनी है।